यहाँ एक और व्यक्ति बैठा हुआ है यह रास्ता कुछ ठीक नहीं है यह मिट्टी का बना है इसके बगल मे एक एलिबेस्टर का घर है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर दुर्गा माँ का बड़ा सा मूर्ति रखा गया है।